और उसके पास एक चेयर भी है इसमें रेखा बार काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

इसमें काफी सारे लाइट भी बर रहे हैं और दो चेयर भी है।

जिसमे दुर्गा मां और बजरंगबली और शंकर भगवान ह--

इसमे एक येलो कलर की लाइट बल रही है।

इसमें कफी सारे सब सामान रखा गया है।

इसके चारों ओर से काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है।

उसके बगल में झंडा भी गाड़ा हुआ है।

यहां पे एक कपड़ा का दुकान है।

यहां पे एक फोर लाइन बड़ा सा रोड है।

यहां एक बच्चे का जनमदिन है।